मिट्ठी कलर का है और व्हाईट कलर का है और उसमे काच लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है और एक चेयर है जो ब्लैक कलर का है और एक सेल्लो टेप रखा--

इस इमेज में मुझे एक होल दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है और ग्रे कलर का है और कुछ लोग दिख रहे है और एक कार्पेट दिखाई दे रहा है जो ब रेड --

दे रहा है और एक दीवार है जो व्हाईट कलर का है और ब्लू कलर का है और कुछ लाइटे दिखाई दे रही है जो व्हाईट कलर --

के है और कुछ पोल दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर के है और येल्लो कलर के है।